पेज काउंटर पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह प्रत्येक रिफ्रेशrefreshपर गणना करेगा कि कितने लोगों ने आपके पेज को देखा है
अतः हर बार जब कोई पेज पर जाता हैवेल्यू बढ़ जाएगी एक टेक्स्ट फाइल में संचित होगी और यह उपयोगकर्ता को दर्शायी जाएगी
या आप उसको अपने लिए रख सकते हैं यह आपकी इच्छा है यदि आप दर्शाना चाहते हैं
कृपया ध्यान दें यह इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है
यह विशिष्ट विजिटर्स नहीं गिनता
मैं विशिष्ट विजिटर्स ट्यूटोरियल शीघ्र ही बनाऊँगा
जब आप इसको देख रहे होंगे सम्भवतः तब वह उपलब्ध होगा
अतः उसको देखिये वह अधिक विशिष्ट होगा
वह ip addresses का वर्णन करता है
हालाँकिअभी के लिए यह एक बुनियादी काउन्टर ट्यूटोरियल है और यह डेटाबेस स्टोरेज की अपेक्षा फाइल स्टोरेज इस्तेमाल करता है
ठीक है तो पहला कार्य हमें करना है कि एक फाइल बनाएँ जिसमें अपनी वेल्यू रखें
इसको करने के 2 तरीके हैं
या तो राइट क्लिक करें और या नया टेक्स्ट डाक्युमेन्ट बनाएँ
या मैं आपको क्या दिखाऊँगा कि खोलने के लिए फाइल कैसे बनाएँ जोकि फंक्शनfunction fopen है
और हम इसको फाइल वेरिएबल में रखेंगे किन्तु यह अनिवार्य नहीं है
और हम लिखेंगे countphp और इसके लिए एक अन्य पैरामीटर चाहे आप लिखने के लिए पढ़ने के लिए या इसको जोड़ने के लिए उदाहरणस्वरुप
अतःचलिए मैं लिखने के लिए बोलूँगा
ठीक हैअब मैं fwrite लिखूँगा और मैं file पर लिखूँगा और मैं शून्य की वेल्यू बनाऊँगा
अतःअब हम अपना पेज खोलेंगे और रिफ्रेशrefresh करेंगे
हमारे पास counterphp है इस पर क्लिक करिये और जब हम वापस जाते हैं देखिये यदि आपको countphp मिला है
तो txt
अतः चलिए इसे रिफ्रेशrefresh करते हैं
ठीक है तो अब हमारे पास एक txt फाइल होनी चाहिए
चलिए मैं इस countफ्प को निकाल देता हूँ
अब हमने यह कर लिया है और हमें सचमुच में इस कोड की आवश्यकता नहीं है
अतः मैं इस भाग को डिलीट कर देता हूँ किन्तु मैं इसे रखूँगा और अब मैं कहूँगा कि मैं फाइल से पढ़ना चाहता हूँ
यह आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं आपको केवल पढ़ने के बजाय लिखने के लिए एक फाइल बनानी होगी
अतः हमें हमारी फाइल मिल गयी और उसमें हमें शून्य की हमारी वेल्यू मिल गयी है
अतःचलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं
हाँ हमें counttxt शून्य के साथ मिल गया है जोकि इसको पढ़ेगा और इसको उसमें डालेगा
अतःअब मुझे फाइल का कंटेंट्स प्राप्त करने की आवश्यकता है
अतःfopen के स्थान पर मैं file_get_contents लिखूँगा
अतः मैंfile_get_contents टाइप करूँगा
और यह counttxt के कंटेंट्स को लाएगा
ठीक है फिर मैं echo लिखूँगा और मैं वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा और मैं echo file लिखूँगा
अब यह क्या करेगा कि यह file_get_contents कहेगा और हमारी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को हमारे काउंट वेरिएबल के साथ यहाँ ले आएगा
और यह फाइल के कंटेंट्स को एकोecho करने कहेगा
अतःचलिए अपने पेज पर वापस जाते हैं और हम रिफ्रेशrefrsehकरेंगे
काउंटर पर क्लिक करिये और अभी हमें शून्य मिला
रिफ्रेशrefresh करते हैं यह अभी भी शून्य है जैसा यहाँ दिख रहा है
यदि मैं इसे hello में बदलता हूँ और पुनः मैं अपने पेज पर गया और रिफ्रेशrefreshकिया इसके पास hello वेल्यू होगी
अतः इस समय फाइल में जो कुछ भी है हम केवल उसे एकोecho कर रहे हैं
और अभी यह शून्य है पूर्णांक शून्य
अब इसे एकोechoकरने के लिए मैं youve had file visitors लिखूँगा
अतः यह हमें कुछ इस प्रकार देगा
अब मैं क्या करूँगा कि मैं विजिटर्स नामक एक नया वेरिएबल बनाऊँगा
और मैं लिखूँगा equal to file
मैं इसको अधिक प्रभावशाली और साथ ही पढ़ने में अधिक सरल बनाने के लिए यहाँ ऊपर रखूँगा
और मैं लिखूँगा visitors और हम बोल सकते हैं कि यह क्या होने जा रहा है
और फिर हम क्या लिखेंगे कि visitors
visitors new equals this vistors plus 1
अतः यह हमारी नई वेल्यू होगी
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ filenewअतः मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ
मैं इसको counttxt की तरह खोलूँगा क्योंकि यह वही है
और अब मैं इस फाइल पर लिखने के लिए बोलूँगा
अब यदि यह a+ था इसका मतलब append अतः मैं इस फाइल में कुछ संलग्न कर रहा हूँजिसका मतलब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ
मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर लिखूँ इसलिए मैं w रखूँगा
और फिर मैं fwrite लिखूँगा जैसा कि हमने अपने पहले भाग filenew में किया था
और वेल्यू जो मैं लिखना चाहता हूँvisitorsnew है
यह कार्य कर रहा है चलिए इससे पहले कि आप इसे रन करें तुरंत इसे देख लें
हमें हमारी मुख्य फाइल मिल गयी है और यह हमारे counttxt का कंटेंट्स होने जा रहा है जोकि इस समय शून्य है
हम अपने visitors नामक वेरिएबल को इस फाइल के कंटेंट्स में निर्धारित कर रहे हैं
हम उपयोगकर्ता को एकोecho कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने विजिटर्सvisitorsहैं
और हम visitors + 1के साथ एक नया वेरिएबल बना रहे हैं अर्थात व्यक्ति जो इस समय पेज को देख रहा है
यह महत्वपूर्ण बन जाता है वह व्यक्ति यहाँ अतिरिक्त 1 जोड़ रहा है
और फिर हम एक नई फाइल खोल रहे हैं जैसा कि हमने ट्यूटोरियल के प्रारम्भ में देखा था किन्तु इसकी जगह हम लिखने के लिए w इस्तेमाल कर रहे हैं
फिर हम अपनी नई फाइल में नई वेल्यू लिख रहे हैं जोकि 1 से बढ़ी हुई है
अतःचलिए रिफ्रेशrefreshकरते हैं और आप देख सकते हैं ओह!
यह कार्य नहीं कर रहा है
ठीक हैतो चलिए इस कोड को जाँचते हैं
चलिए विजिटर्स की वर्तनी जाँचते हैं visitors new ठीक है visitors
यह कारण है मुझे यहाँ एक n रखना चाहिए था
अतः counttxt
अब इस बार हर बार जब हम रिफ्रेशrefreshकरते हैं हम 1 जोड़ रहे हैं
आप देख सकते हैं कि वेल्यू वास्तव में बढती जा रही है
अब स्पष्टतःइसको रिसेटresetकरने के लिए आपको बस इतना करना है कि
आह! चेतावनी counttxt बदल गई हैक्योंकि हमने इसको संपादित कर दिया है
मैं लिखूँगाreload from disk
और यह 19 में बदल गया जैसा कि आप देख सकते हैं यह यहाँ पर 18 दर्शा रहा है
इसका कारण है कि हम इसे अपनी नई वेल्यू रखने से पहले ही एकोecho कर रहे हैं
अतःअधिकतम दक्षता के लिए और वास्तविक सही वेल्यू पाने के लिए मैं इस कोड को यहाँ नीचे रख दूँगा
यथार्थःजब मैं यहाँ रिफ्रेशrefresh कर रहा हूँ और चलिए कहते हैंहमें 25 विजिटर्स तक मिल गये और हम यहाँ वापस आते हैंहमारे पास 26 वेल्यू है
ठीक है मैं यहाँ शायद थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा हूँ
इसको करने का ऐसा कोई बड़ा प्रभावशाली तरीका नहीं है
यह सदैव ही visitors एकोecho करेगा
अतः केवल विविधता के लिए हम visitors_new लिखेंगे
अतः यह बिलकुल उसकी के बराबर होगा ओह नहीं!
visitors new एक और वर्तनी की ग़लती
सही है चलिए बढ़ाकर 35 करते हैं और हम कंटेंट्स में जा रहे हैं और यह वेल्यू 35 के बराबर है
सब कुछ स्थान नहीं होता जब आपको एक कोड के साथ सामना करना हो जो इसकी तरह सरल हो किन्तु यह मदद करता है
ठीक है तो यह बुनियादी ट्यूटोरियल है
यदि आपको इस पर कोई सहायता चाहिए तो कृपया हमारे साथ बने रहिये
किन्तु अभी के लिए इसको प्रयास करिये इसके साथ जाइये
इसके साथ ही एडवांस्डउच्च श्रेणी काउंटर पर मेरा अगला ट्यूटोरियल देखिये जो ip adressess को महत्व देता है
देखने के लिए धन्यवाद मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद